ये एक पुराना सा खंडहर नजर आ रहा हैं जिसमे पूरी तरह ध्वस्त जैसे लग रहा हैं पेड़-पौधे जंगल जन्म गए है काफी घास-फुस दिवालो के ऊपर--